इ तो कांच आर अपारदर्शी दिखाई दे रहे हैं इसका बोनट भी सफेद रंग का काला दिखाई दे रहा है| आसपास किसी ग्राउंड में खड़ी हुई दिखाई दे रही है ।

आस-पास घर दिखाई दे रहे हैं| कुछ दीवारें सफेद रंग की दिख रही है| सामने एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

कुछ कारो की नंबर प्लेट पिले रंग की दिखाई दे रही है भी बना हुआ दिखाई दे रहा है कुछ छत्तरी लाल पिले रंग की शकल दिख रही है।

की पत्तिया हरी दिख रही है सामने एक घर दिख रहा है जो सफेद रंग का दिख रहा है उसकी जालियो पे कुछ कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे है।

गाड़ी के पास मे एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ हरा भरा पेड़ भी दिखाई दे रहा है। बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है रोड कच्चा और दिख रहा है।